ए एक दुकान है दुकान के बहार फुग्गे से सजा हुआ है बेगनी और सफेद कलर के फुगे लगे हैं।

और एक बोर्ड है। दुकान के सामने कुछ वहांन रखी हुई है।

एक हल बना हुआ है हाल मेंबहुत सारी टेबल रखी है जो नीचे बनी हुई साइकिल के ऊपर रखी है।

और कुछ व्यक्ति है आसपास पेड़ लगे है।

एक बड़ा सा मैदान है उस मैदान मैं बहुत सरे लोग है कुछ औरते है कुछ आदमी है और कुछ बच्चे है।

बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है बहुत सारी ऐ.सी. -यां लगी हुई है।